पहाड़ो के बीच मे कुछ हरे-भरे झाड़ हरे-भरे झाड़ों के बीच मे कुछ खुला मैदान मे चारो और डीजाइन पूर्ण--

गार्डन के आजू-बाजु खूबसूरत हरी-भरी पेड़ हरी-भरी झाड़ सामने खूबसूरत गेट डिजाइन पूर्ण वातावरण चारो और रोशनी बीखरता हुआ।

खूबसूरती का नजारा किसको अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार छोटे छोटे फूलों के झाड़ रंग बिरंगे फूल--